एक आदमी खड़ा है बाहर कई सारी साइकिलें लाइन से खड़ी दिख रही हुई हैं।

ये एक होंडा का शोरूम है जिसके बाहर कई सारी कारें खड़ी है और--

यहां पर एक कार खड़ी है होंडा की जिसका नाम है होंडा अमेज ।

आसपास में कई सारे खंबे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये सब लोग ये चीज हाथ में लिए हैं और ये सब लोग भोपू बज रहे हैं और यहां कई लोग ढोलक भी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं।

सारे लोग है यहां और सरिया भी यहां से दिख रही है और एक घर भी बना हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा --

यहां पर यह एक रेस्टोरेंट का दिखाया जा रहा है यहां पर कई सारी टेबलें रखी हैं चेयर रखी हैं सो और सोफे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा सा ग्लास भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां पर कई सारे टेबल और कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर यह एक क्लास रूम दिखाई जा रही है जिस पे कई सारी बेंच लाइन से रखी हुई है।

कई सारी जगहों पर घास दिख रही है और यहां कई सारे जगह पर पेड़ भी दिखाई दे रहे।

कई सारे आदमी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक बच्ची पर्स टांगे हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश लिखा हुआ है।

यहां पर कई सारी पत्तियां लगी हुई हैं ग्रीन कलर में और यह दो आदमी यहां पर हैं।

जिसके बाहर एक बाइक खड़ी हुई है जिसके ऊपर हेलमेट टंगा हुआ है।

यहां पर दो रिक्शे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह रिक्शा यात्री कंपनी का है और उसके बगल में एक नीला रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर ये दोनों आदमी सीधे खड़े हुए दिख रहे--

दूल्हे के सर पे सेहरा रखा हुआ है और स्टेज पे दो आदमी भी खड़े हैं माइक लिए हुए।

यहां पर एक जिओ के बोर्ड पे लिखा है गंगाराम मुन्सीपालटी और इधर सामने एस_बी_आई की ब्रांच है जिसके अंदर ये लोग जा रहे--

बाहर की तरफ कई सारी गाड़ियां भी लाइन से खड़ी हुई दिख रही है।

यहां पर ये कई सारी घासें बनी हुई हैं।

यहां सामने कि तरफ नदी है जिसमें कई सारा पानी भी भरा हुआ है।

यहां पर यह एक परचून की दुकान लग रही है यहाँ--

यहां पर क्रीम भी रखी हुई है यहां पर कई सारे बिस्किट भी रखे हुए हैं।

यहां पर ये एक गार्डन है। यहां पर कई सारे जगह पर घास बने हैं। यहां कई सारे जगह पर गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मिट्टियां भी पड़ी हुई दिख रही है सामने की तरफ कई सारी जगहो पर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक टॉय शॉप है। यहां बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे टॉय मिलते हैं।

यहां पर कई सारी झालरे भी लटक रही हुई दिख रही है।

इन पेड़ों के ऊपर कई सारी पत्तियां भी बनी हुई हैं यहां पर नीचे मैदान है।